तालाब है पानी है सीढ़ी है गेट है आदमी खड़ा हुआ है कुछ लिखा हुआ है पेड़ है पौधा है गन्दी पानी है ग्रिल है शेटर लगा हुआ है बहुत सारे आदमी है रोड बना हुआ पुल बना हुआ है।